और यहां पे बहोत सारे विंडो वगैरा हैं बनी आगे बहोत सारी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई उसमें छोटे छोटे से कंकड़ हैं।

साइड में बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ी सी बगिया है और उसमें हरी हरी घास खड़ी हुई है और छोटे छोटे से पेड़ खड़े हुए हैं।

इस नाव में एक बड़ा सा जार रखा हुआ है।

यहां पे एक दो कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़ रहा है।

और यहां पे बहुत सारे सिलेंडर वगैरा छपे हुए बड़े से पोस्टर लगे हुए।